यहां पर एक नाव खड़ी है यहां पे दो लड़के अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं।

यहाँ पे स्टेज सजाया जा रहा है यहाँ पे बहोत सारे--

कुछ तस्वीरें लाइट की लगी हुई है यहां पे बहोत सारे झंडे लगे हुए हैं कुछ बच्चे यहां पे बैठ कर देख रहे हैं।

एक दीवार पर एक पर्चा लटकाया हुआ है यहां पे बहोत सारी तारे भी--

पर्चा भी लगा हुआ दवाई का अंदर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है।

ऊपर पंखा लटकाया गया है यहां पे बोर्ड लगा हुआ--

जो कि नीले कलर की है यहां पे बहुत सारे--

टी शर्ट और लोअर पहना हुआ यहाँ पे बहोत सारे जिम कर रहे है।

पे मेज पे समान रखा हुआ है।

यहां पर बोहोत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी मिठाईया मिलती है।

यहां पर शीशे की खिड़कियां लगी हुई है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे लाल कलर का मैट बिछाया गया है।

यहां पे स्टेज पर बहोत सारे बच्चे डांस कर रहे है।

यहां पे दिल का शेप का बोर्ड लगाया गया है इमोजी का भी यहां पे लगाए गए हैं।

ये एक घर की तस्वीर है मेज पर--

सामने एक हरे कलर की बाल्टी रखी हुई है यहां पे बहुत सारी लाइटे रखी लगाई गई है यहां पे एक बोतल रखी हुई है और इसे --

साने बहोत सारे लाइटें लगाए गए है आ बैठने के लिए मेज और कुर्सी लगाई गई है।